वो दो से तीन मुझे इसमें स्कूल बसें भी नज़र आ रही हैं।

यहाँ पर मुझे केक नजर आ रहा हैं जोकि बैंगनी कलर का हैं और चॉकलेट केक नज़र आ रहा हैं।

बोर्ड लगा हुआ हैं और उसके सामने बोहोत आठ दस बारह गाड़ियां खड़ी हुई हैं और उसका मेन गेट जो हैं मुझे है की शटर जैसा दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का।

आ ओ इसमें मुझे कुछ टेबल्स नज़र आ रही हैं और कुर्सियाँ लगी हुई हैं एण्ड एक बाल्टी भी रखी हुई है इसमें और कुछ फ्लेक्स लगे हुए हैं।

और हरे घा पेड़ बोहोत सारे इसमे मुझे नजर आ रहे है और मैंन रोड जोकि पानी गिरता हुआ पूरा ब्लैक कलर का नजर आ रहा है।

यहाँ पर मुझे आठ से दस भुट्टे दिखाई दे रहे हैं जिसमे से तीन या चार भुट्टे जो हैं उसके ऊपर से --

हरा रंग का कवर उतरा हुआ है। बाकी के उनके ऊपर हरा कवर चढ़ा हुआ है। यहाँ एक जमीन पे पड़े हुए हैं जो की ब्लैक कलर की ज़मीन दिखाई दे रही है।

यहाँ एक मुझे किराने का दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर अनगिनत विमल्स वगैरह की पाउच टंगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा हैं उसने एक टी-शर्ट रंग-बिरंगी पहन रखी हैं।

यहाँ पर एक ईमारत नज़र आ रही है जो के कम से कम बारह से पंद्रह फ्लोर की है और वह ऑरेंज और व्हाईट की पुति हुईं है।

गृह डोर ग्रीन कलर का है औ उसमें बोहोत सारे झालरें लगी हुई हैं। पूरा लाइटों से सजा हुआ हैं।

यहाँ पर ऊपर बैलून्स भी दिखाई दे रहे हैं और पेन्सिलों के पैकेट नज़र आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट जॉब्स के बुक्स नज़र आ रही हैं।

सफ़ेद कलर की कार है और दो तीन पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। टावर नज़र आ रहा है। खंभे नज़र आ रहे हैं।